और इसके नीचे एक बोहोत बड़ी गुफ़ा है।

यहाँ पर एक बंधन बैंक है।

सु सूर्य भी अस्त हो रहा है।

जहाँ पर हमें शादी विवाह या --

यहाँ पर गाड़ियाँ बनती --

छत की मुरम्मत कर रहे है।

और यहाँ पर दो लोग फ़ोटो क्लीक --

यह एक बड़ा सा समूह --

यह एक कार गैरेज है।